मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज हम मन की बात के छियानवे 96 एपिसोड में साथ जुड़ रहे हैं
मन की बात का अगला एपिसोड वर्ष 2023 का पहला एपिसोड होगा
आप लोगों ने जो सन्देश भेजे उनमें जाते हुए 2022 के बारे में बात करने को भी बड़े आग्रह से कहा है
अतीत का अवलोकन तो हमेशा हमें वर्तमान और भविष्य की तैयारियोँ की प्रेरणा देता है
2022 में देश के लोगों का सामर्थ्य उनका सहयोग उनका संकल्प उनकी सफलता का विस्तार इतना ज्यादा रहा कि मन की बात में सभी को समेटना मुश्किल होगा
2022 वाकई कई मायनों में बहुत ही प्रेरक रहा अद्भुत रहा
इस साल भारत ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किये और इसी वर्ष अमृतकाल का प्रारंभ हुआ
इस साल देश ने नई रफ़्तार पकड़ी सभी देशवासियों ने एक से बढ़कर एक काम किया
2022 की विभिन्न सफलताओं ने आज पूरे विश्व में भारत के लिए एक विशेष स्थान बनाया है

खेल के मैदान में भी चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो या हमारी महिला हॉकी टीम की जीत हमारे युवाओं ने जबरदस्त सामर्थ्य दिखाया
साथियो इन सबके साथ ही साल 2022 एक और कारण से हमेशा याद किया जाएगा
ये है एक भारतश्रेष्ठ भारत की भावना का विस्तार
देश के लोगों ने एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए भी कई अद्भुत आयोजन किए
गुजरात के माधवपुर मेला हो जहाँ रुक्मिणी विवाह और भगवान कृष्ण के पूर्वोतर से संबंधों को सेलिब्रेट किया जाता है या फिर काशीतमिल संगमम् हो इन पर्वों में भी एकता के कई रंग दिखे
2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है
अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान भला कौन भूल सकता है
वो पल थे हर देशवासी के रौंगटे खड़े हो जाते थे
आजादी के 75 वर्ष के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया
6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो तिरंगे के साथ सेल्फी भी भेजीं
आजादी का ये अमृत महोत्सव अभी अगले साल भी ऐसे ही चलेगा अमृतकाल की नींव को और मजबूत करेगा
साथियो इस साल भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली है
मैंने पिछली बार इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी
साल 2023 में हमें G20 के उत्साह को नई ऊँचाई पर लेकर जाना है इस आयोजन को एक जनआंदोलन बनाना है
मेरे प्यारे देशवासियो आज दुनियाभर में धूमधाम से क्रिस्टमास का त्योहार भी मनाया जा रहा है
ये जेसस क्रिस्ट के जीवन उनकी शिक्षाओं को याद करने का दिन है
मैं आप सभी को क्रिस्टमास की ढ़ेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ
साथियो आज हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपयी जी का जन्मदिन भी है
वे एक महान राजनेता थे जिन्होनें देश को असाधारण नेतृत्व दिया
हर भारतवासी के ह्रदय में उनके लिए एक खास स्थान है
मुझे कोलकाता से आस्था जी का एक पत्र मिला है
इस पत्र में उन्होंने हाल की अपनी दिल्ली यात्रा का जिक्र किया है
वे लिखती हैं कि इस दौरान उन्होंने पीएम म्यूजियम देखने के लिए समय निकाला
इस म्यूजियम में उन्हें अटल जी की गैलरी खूब पसंद आई
अटल जी के साथ वहाँ खिंची गई तस्वीर तो उनके लिए यादगार बन गई है
अटल जी की गैलरी में हम देश के लिए उनके बहुमूल्य योगदान की झलक देख सकते हैं
इंफ्रास्ट्रक्चर हो शिक्षा या फिर विदेश नीति उन्होंने भारत को हर क्षेत्र में नई ऊँचाइयों पर ले जाने का काम किया
मैं एक बार फिर अटल जी को हृदय से नमन करता हूँ
साथियो कल 26 दिसम्बर को वीर बाल दिवस है और मुझे इस अवसर पर दिल्ली में साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फ़तेह सिंह जी की शहादत को समर्पित एक कार्यक्रम में शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा
देश साहिबजादे और माता गुजरी के बलिदान को हमेशा याद रखेगा
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे यहां कहा जाता है
सत्यम किम प्रमाणम प्रत्यक्षम किम प्रमाणम
यानि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जो प्रत्यक्ष है उसे भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती
लेकिन बात जब आधुनिक मेडिकल साइंस की हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रमाण एविडेंस
सदियों से भारतीय जीवन का हिस्सा रहे योग और आयुर्वेद जैसे हमारे शास्त्रों के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च की कमी हमेशाहमेशा एक चुनौती रही है परिणाम दिखते हैं लेकिन प्रमाण नहीं होते हैं
लेकिन मुझे ख़ुशी है कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के युग में अब योग और आयुर्वेद आधुनिक युग की जाँच और कसौटियों पर भी खरे उतर रहे हैं
आप सभी ने मुंबई के टाटा मेमोरियल सेंटर के बारे में ज़रूर सुना होगा
इस संस्थान ने रिसर्च इनोवेशन और कैंसर केयर में बहुत नाम कमाया है
इस सेंटर द्वारा की गई एक इंटेंसिव रिसर्च में सामने आया है कि ब्रेस्ट ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए योग बहुत ज्यादा असरकारी है
टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी रिसर्च के नतीजों को अमेरिका में हुई बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रेस्ट कैंसर कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया है
इन नतीजों ने दुनिया के बड़ेबड़े एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा है
क्योंकि टाटा मेमोरियल सेंटर ने एविडेंस के साथ बताया है कि कैसे मरीजों को योग से लाभ हुआ है
इस सेंटर की रिसर्च के मुताबिक योग के नियमित अभ्यास से ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों की बीमारी के फिर से उभरने और मृत्यु के खतरे में 15 प्रतिशत तक की कमी आई है
भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में यह पहला उदाहरण है जिसे पश्चिमी तौरतरीकों वाले कड़े मानकों पर परखा गया है
साथ ही यह पहली स्टडी है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित महिलाओं में योग से क्वालिटी ओएफ लाइफ के बेहतर होने का पता चला है
इसके लोंग टर्म बेनिफिट्स भी सामने आये हैं
टाटा मेमोरियल सेंटर ने अपनी स्टडी के नतीजों को पेरिस में हुए यूरोपियन सोसाइटी ओएफ मेडिकल ओंकोलॉजी ऑन्कोलॉजी में उस सम्मेलन में प्रस्तुत किया है
साथियो आज के युग में भारतीय चिकित्सा पद्दतियाँ जितनी ज्यादा एविडेंसबेस्ड होंगी उतनी ही पूरे विश्व में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी
इसी सोच के साथ दिल्ली के एम्स में भी एक प्रयास किया जा रहा है
यहाँ हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्दतियों को वैलिडेट करने लिए छह साल पहले सेंटर फोर इंटीग्रेटिव मेडिसिन एंड रिसर्च की स्थापना की गई
इसमें लेटेस्ट मॉडर्न टेकनिक्स और रिसर्च मेथड्स का उपयोग किया जाता है
यह सेंटर पहले ही प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में 20 पेपर्स प्रकाशित कर चुका है
अमेरिकन कॉलेज ओएफ कार्डियोलॉजी के जर्नल में प्रकाशित एक पेपर में सिनकोप सिन्कपी से पीड़ित मरीजों को योग से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है
इसी प्रकार न्यूरोलॉजी जर्नल के पेपर में माइग्रेन में योग के फायदों के बारे में बताया गया है
इनके अलावा कई और बीमारियों में भी योग के बेनिफिट्स को लेकर स्टडी की जा रही है
जैसे हर्ट डिसीज डिप्रेशन स्लीप डिसॉर्डर और प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्यायें
साथियो कुछ दिन पहले ही मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के लिए गोवा में था
इसमें 40 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए और यहां 550 से अधिक साइंटिफिक पेपर्स प्रेजेंट किये गए
भारत सहित दुनियाभर की करीब 215 कंपनियों ने यहाँ एक्सिबिशन में अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया
चार दिनों तक चले इस एक्सपो में एक लाख से भी अधिक लोगों ने आयुर्वेद से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय किया
आयुर्वेद कांग्रेस में भी मैंने दुनिया भर से जुटे आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च का आग्रह दोहराया
जिस तरह कोरोना वैश्विक महामारी के इस समय में योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं उसमें इनसे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी
मेरा आपसे भी आग्रह है कि योग आयुर्वेद और हमारी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े हुए ऐसे प्रयासों के बारे में अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो उन्हें सोशल मीडिया पर जरुर शेयर करें
मेरे प्यारे देशवासियो बीते कुछ वर्षों में हमने स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है
इसका पूरा श्रेय हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स साइंटिस्ट्स और देशवासियोँ की इच्छाशक्ति को जाता है
हमने भारत से स्मॉलपॉक्स पोलियो और गुइनिया वॉर्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है
आज मन की बात के श्रोताओं को मैं एक और चुनौती के बारे में बताना चाहता हूं जो अब समाप्त होने की कगार पर है
ये चुनौती ये बीमारी है कालाजार
इस बीमारी का परजीवी सैंड फ्लाई यानि बालू मक्खी के काटने से फैलता है
जब किसी को कालाजार होता है तो उसे महीनों तक बुखार रहता है खून की कमी हो जाती है शरीर कमजोर पड़ जाता है और वजन भी घट जाता है
यह बीमारी बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी हो सकती है
लेकिन सबके प्रयास से कालाजार नाम की ये बीमारी अब तेजी से समाप्त होती जा रही है
कुछ समय पहले तक कालाजार का प्रकोप 4 राज्यों के 50 से अधिक जिलों में फैला हुआ था
लेकिन अब ये बीमारी बिहार और झारखंड के 4 जिलों तक ही सिमटकर रह गई है
मुझे विश्वास है बिहारझारखंड के लोगों का सामर्थ्य उनकी जागरूकता इन चार जिलों से भी कालाजार को समाप्त करने में सरकार के प्रयासों को मदद करेगी
कालाजार प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से भी मेरा आग्रह है कि वो दो बातों का जरूर ध्यान रखें
एक है सैंड फ्लाई या बालू मक्खी पर नियंत्रण और दूसरा जल्द से जल्द इस रोग की पहचान और पूरा इलाज
कालाजार का इलाज आसान है इसके लिए काम आने वाली दवाएं भी बहुत कारगर होती हैं
बस आपको सतर्क रहना है
बुखार हो तो लापरवाही ना बरतें और बालू मक्खी को खत्म करने वाली दवाइयों का छिड़काव भी करते रहें
जरा सोचिए हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो ये हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात होगी
सबका प्रयास की इसी भावना से हम भारत को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए भी काम कर रहे हैं
आपने देखा होगा बीते दिनों जब टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ तो हजारों लोग टीबी मरीजों की मदद के लिए आगे आए
ये लोग निक्षय मित्र बनकर टीबी के मरीजों की देखभाल कर रहे हैं उनकी आर्थिक मदद कर रहे हैं
जनसेवा और जनभागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है
मेरे प्यारे देशवासियो हमारी परंपरा और संस्कृति का माँ गंगा से अटूट नाता है
गंगा जल हमारी जीवनधारा का अभिन्न हिस्सा रहा है और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है
नमामि गंगे तव पाद पंकजं
वन्दित दिव्य रूपम्
भुक्तिम् च मुक्तिम् च ददासि नित्यम्
भाव अनुसारेण सदा नराणाम्
अर्थात् हे माँ गंगा आप अपने भक्तों को उनके भाव के अनुरूप सांसारिक सुख आनंद और मोक्ष प्रदान करती हैं
सभी आपके पवित्र चरणों का वंदन करते हैं
मैं भी आपके पवित्र चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूं
ऐसे में सदियों से कलकल बहती माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
इसी उद्देश्य के साथ आठ साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी
हम सभी के लिए यह गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनियाभर की सराहना मिल रही है
यूनाइटेड नेशंस ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाले दुनिया के टॉप टेन इनिशिएटिव्स में शामिल किया है
ये और भी खुशी की बात है कि पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को यह सम्मान मिला है
साथियो नमामि गंगे अभियान की सबसे बड़ी ऊर्जा लोगों की निरंतर सहभागिता है
नमामि गंगे अभियान में गंगा प्रहरियों और गंगा दूतों की भी बड़ी भूमिका है
वे पेड़ लगाने घाटों की सफाई गंगा आरती नुक्कड़ नाटक पेंटिंग और कविताओं के जरिए जागरूकता फैलाने में जुटे हैं
इस अभियान से बायोडायवर्सिटी में भी काफी सुधार देखा जा रहा है
हिल्सा मछली गंगा डॉल्फिन और कछुवों की विभिन्न प्रजातियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है
गंगा का इकोसिस्टम क्लीन होने से आजीविका के अन्य अवसर भी बढ़ रहे हैं
यहाँ मैं जलज आजीविका मॉडल की चर्चा करना चाहूंगा जो कि बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है
इस टूरिजम्बेस्ड बोट सफारिस को 26 लोकेशंस पर लॉन्च किया गया है
जाहिर है नमामि गंगे मिशन का विस्तार उसका दायरा नदी की सफाई से कहीं ज्यादा बढ़ा है
ये जहाँ हमारी इच्छाशक्ति और अथक प्रयासों का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है वहीं ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विश्व को भी एक नया रास्ता दिखाने वाला है
मेरे प्यारे देशवासियो जब हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी आसान हो जाती है
इसकी मिसाल पेश की है सिक्किम के थेगू गाँव के संगे शेरपा जी ने
ये पिछले 14 साल से 12000 फीट से भी ज्यादा की ऊचाई पर पर्यावरण संरक्षण के काम में जुटे हुए हैं
संगे जी ने सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व का त्सोमगो सोमगो लेक को स्वच्छ रखने का बीड़ा उठा लिया है
अपने अथक प्रयासों से उन्होंने इस ग्लेशियर लेक का रंग रूप ही बदल डाला है
साल 2008 में संगे शेरपा जी ने जब स्वच्छता का यह अभियान शुरू किया था तब उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा
लेकिन देखते ही देखते उनके इस नेक कार्यों में युवाओं और ग्रामीणों के साथ ही पंचायत का भी भरपूर सहयोग मिलने लगा
आज आप अगर त्सोमगो सोमगो लेक को देखने जाएंगे तो वहां चारों ओर आपको बड़ेबड़े गार्बेज बिन्स मिलेंगे
अब यहां जमा हुए कूड़ेकचरे को रिसाइक्लिंग के लिए भेजा जाता है
यहां आने वाले पर्यटकों को कपड़े से बने गार्बेज बैग्स भी दिए जाते हैं ताकि कूड़ाकचरा इधरउधर न फैंके
अब बेहद साफ़सुथरी हो चुकी इस झील को देखने हर साल करीब 5 लाख पर्यटक यहां पहुंचते हैं
त्सोमगो सोमगो लेक के संरक्षण के इस अनूठे प्रयास के लिए संगे शेरपा जी को कई संस्थाओं ने सम्मानित भी किया है
ऐसी ही कोशिशों की बदौलत आज सिक्किम की गिनती भारत के सबसे स्वच्छ राज्यों में होती है
मैं संगे शेरपा जी और उनके साथियों के साथसाथ देशभर में पर्यावरण संरक्षण के नेक प्रयास में जुटे लोगों की भी ह्रदय से प्रशंसा करता हूं
साथियो मुझे खुशी है कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रचबस चुका है
साल 2014 में इस जन आंदोलन के शुरू होने के साथ ही इसे नयी ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किये हैं और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं
लगातार इन प्रयासों का परिणाम यह है कूड़ा कचरा हटने के कारण बिन जरुरी सामान हटने के कारण दफ्तरों में काफी जगह खुल जाती है नया स्पेस मिल जाता है
पहले जगह के आभाव में दूरदूर किराये पर दफ्तर रखने पड़ते थे
इन दिनों ये साफसफाई के कारण इतनी जगह मिल रही है कि अब एक ही स्थान पर सारे दफ्तर बैठ रहें हैं
पिछले दिनों सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी मुंबई में अहमदाबाद में कोलकता में शिलांग में कई शहरों में अपने दफ्तरों में भरपूर प्रयास किया और उसके कारण आज उनको दोदो तीनतीन मंजिलें पूरी तरह से नये सिरे से काम में आ सके ऐसी उपलब्ध हो गई
ये अपने आप में स्वच्छता के कारण हमारे संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस का उत्तम अनुभव आ रहा है
समाज में भी गाँवगाँव शहरशहर में भी उसी प्रकार से दफ्तरों में भी ये अभियान देश के लिए भी हर प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो रहा है
मेरे प्यारे देशवासियो हमारे देश में अपनी कलासंस्कृति को लेकर एक नई जागरूकता आ रही है एक नई चेतना जागृत हो रही है
मन की बात में हम अक्सर ऐसे उदाहरणों की चर्चा भी करते हैं
जैसे कला साहित्य और संस्कृति समाज की सामूहिक पूंजी होते हैं वैसे ही इन्हें आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी पूरे समाज की होती है
ऐसा ही एक सफल प्रयास लक्षद्वीप में हो रहा है
यहां कल्पेनी द्वीप पर एक क्लब है कूमेल ब्रदर्स चैलेंजर्स क्लब
ये क्लब युवाओं को स्थानीय संस्कृति और पारंपरिक कलाओं के संरक्षण के लिए प्रेरित करता है
यहाँ युवाओं को लोकल आर्ट कोलकली परीचाकली किलिप्पाट्ट और पारंपरिक गानों की ट्रेनिंग दी जाती है
यानि पुरानी विरासत नई पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित हो रही है आगे बढ़ रही है और साथियो मुझे ख़ुशी है इस प्रकार के प्रयास देश में ही नहीं विदेश में भी हो रहे हैं
हाल ही में दुबई से खबर आई कि वहाँ के कलारी क्लब ने गिनेस बुक ओएफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स में नाम दर्ज किया है
कोई भी सोच सकता है कि दुबई के क्लब ने रेकॉर्ड बनाया तो इसमें भारत से क्या संबंध दरअसल ये रेकॉर्ड भारत की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू से जुड़ा है
ये रेकॉर्ड एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा कलारी के प्रदर्शन का है
कलारी क्लब दुबई ने दुबई पुलिस के साथ मिलकर ये प्लान किया और यूएई के नेशनल डे में प्रदर्शित किया
इस आयोजन में 4 साल के बच्चों से लेकर 60 वर्ष तक के लोगों ने कलारी की अपनी क्षमता का बेहतरीन प्रदर्शन किया
अलगअलग पीढ़ियाँ कैसे एक प्राचीन परम्परा को आगे बढ़ा रही है पूरे मनोयोग से बढ़ा रही है ये उसका अद्भुत उदाहरण है
साथियो मन की बात के श्रोताओं को मैं कर्नाटका के गडक जिले में रहने वाले क्वेमश्री जी के बारे में भी बताना चाहता हूँ
क्वेमश्री दक्षिण में कर्नाटका की कलासंस्कृति को पुनर्जीवित करने के मिशन में पिछले 25 वर्षों से अनवरत लगे हुए हैं
आप कल्पना कर सकते हैं कि उनकी तपस्या कितनी बड़ी है
पहले तो वो होटेल मैनेजमेंट के प्रोफेशन से जुड़े थे
लेकिन अपनी संस्कृति और परम्परा को लेकर उनका लगाव इतना गहरा था कि उन्होंने इसे अपना मिशन बना लिया
उन्होंने कला चेतना के नाम से एक मंच बनाया
ये मंच आज कर्नाटका के और देशविदेश के कलाकारों के कई कार्यक्रम आयोजित करता है
इसमें लोकल आर्ट और कल्चर को प्रोमोट करने के लिए कई इनोवेटिव काम भी होते हैं
संस्कृति के प्रति देशवासियों का ये उत्साह अपनी विरासत पर गर्व की भावना का ही प्रकटीकरण है
हमारे देश में तो हर कोने में ऐसे कितने ही रंग बिखरे हैं
हमें भी उन्हें सजाने सवाँरने और संरक्षित करने के लिए निरंतर काम करना चाहिए
मेरे प्यारे देशवासियो देश के अनेक क्षेत्र में बांस से अनेक सुन्दर और उपयोगी चीजें बनाई जाती हैं
विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में बांस के कुशल कारीगर कुशल कलाकार हैं
जब से देश ने बैम्बू से जुड़े अंग्रेजों के जमाने के कानूनों को बदला है इसका एक बड़ा बाज़ार तैयार हो गया है
महाराष्ट्र के पालघर जैसे क्षेत्रों में भी आदिवासी समाज के लोग बैम्बू से कई खुबसूरत प्रोडक्ट्स बनाते हैं
बैम्बू से बनने वाले बॉक्सों कुर्सी चायदानी टोकरियाँ और ट्रे जैसी चीजें खूब लोकप्रिय हो रही हैं
यही नहीं ये लोग बैम्बू घास से खुबसूरत कपड़े और सजावट की चीजें भी बनाते हैं
इससे आदिवासी महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है और उनके हुनर को पहचान भी मिल रही है
साथियो कर्नाटक के एक दंपति सुपारी के रेशे से बने कई यूनिक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचा रहे हैं
कर्नाटक में शिवमोगा के ये दम्पति हैं श्रीमान सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती मैथिली
ये लोग सुपारी के रेशे से ट्रे प्लेट और हैंडबैग से लेकर कई डेकोरेटिव चीजें बना रहे हैं
इसी रेशे से बनी चप्पलें भी आज खूब पसंद की जा रही हैं
उनके प्रोडक्ट्स आज लंदन और यूरोप के दूसरे बाज़ारों तक में बिक रहे हैं
यही तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों और पारंपरिक हुनर की खूबी है जो सबको पसंद आ रही है
भारत के इस पारंपरिक ज्ञान में दुनिया सस्टेनेबल फ्यूचर के रास्ते देख रही है
हमें खुद भी इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने की जरुरत है
हम खुद भी ऐसे स्वदेशी और लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ये उपहार में दें
इससे हमारी पहचान भी मजबूत होगी स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी और बड़ी संख्या में लोगों का भविष्य भी उज्जवल होगा
मेरे प्यारे देशवासियो अब हम धीरेधीरे मन की बात के 100वें एपिसोड के अभूतपूर्व पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं
मुझे कई देशवासियों के पत्र मिले हैं जिनमें उन्होंने 100वें एपिसोड के बारे में बड़ी जिज्ञासा प्रकट की है
100वें एपिसोड में हम क्या बात करें उसे कैसे खास बनायें इसके लिए आप मुझे अपने सुझाव भेजेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा
अगली बार हम वर्ष 2023 में मिलेंगे
मैं आप सभी को वर्ष 2023 की शुभकामनायें देता हूँ
ये वर्ष भी देश के लिए खास रहे देश नई ऊँचाइयों को छूता रहे हमें मिलकर संकल्प भी लेना है साकार भी करना है
इस समय बहुत से लोग छुट्टियों के मूड में भी हैं
आप पर्वों को इन अवसरों का खूब आनंद लीजिये लेकिन थोड़ा सतर्क भी रहिए
आप भी देख रहे हैं कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है इसलिए हमें मास्क और हाथ धुलने जैसी सावधानियों का और ज्यादा ध्यान रखना है
हम सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रूकावट भी नहीं पड़ेगी
इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर ढ़ेरों शुभकामनायें
बहुतबहुत धन्यवाद नमस्कार